और अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

यहां पर कॉपी किताबें दिखाई दे रही है कुछ मशीने भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं उस कुर्सियों पर आ दो आदमी बैठे हुए हैं।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

यहां पर एक बहुत बड़ा घास का मैदान दिखाई दे रहा है।

सामने एक दीवार दिखाई दे रही है उसके पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान है इसमें बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।